सामान रखे हुए है बहुत सारे बड़े-बड़े और अंदाजा लगाना मुश्किल है ये शायद मशीन या किसी बड़े वाहन के कुछ पार्ट्स हो सकते है।

और ये पब्लिक एरिया में है कॉस्टमर --

दवाइयों के मेडिकल स्टोर है।

ये एक ये फोटो जो आपको नजर आ रहा है ये एक महिंद्रा का शोरूम का है ये रहा महिंद्रा के गेराज का --

ये एक लोकल मार्केट है। यहाँ आपको कपड़ो का निकर है। छोटे बच्चे के कपड़े रंग-बिरंगे खुबसूरत कपड़े --

कुछ जानवरो की जैसे हाँथी किसी धार्मिक स्थल के --

ये एक वर्कशॉप है जो बाइक रिपेयरिंग की है और आपको बोर्ड दिख रहा होगा ।

वासा में कुछ लिखा हुवा है।

करते हुए और इस पार्क में बहुत स्लाइड्स भी लगी हुई है रंग-बिरंगा और बहुत ही सुन्दर पार्क --

और ब्रिज ये अच्छा लंबा है ।

यहां में रिप्लेस भी होय होते।

बहुत ही सुंदर लग रहा है अंदर कुर्सी वेगरा --

और अच्छे की दुकान अच्छे से सजाइ हुई है। साफ-सुथरी दुकान है।

ये खुले मैदान पर जिसमें आपको पेड़-पौधे नजर आ रहे है एक बिल्डिंग --